नीचे एक आदमी टायर धुल रहा है उसके बाजू में एक लड़का बैठा हुआ है जो की हुआ हैं।

जिस पर भारत सरकार लिखा हुआ है ऊपर लिप्टस के पेड़ दिख रहे हैं।

हरा कलर का हो गया व्हाइट कलर का हो गया ऑरेंज कलर का हो गया और सामने एक फोर व्हीलर दिख रही हैं और कुछ लोग सामने खड़े हुए हैं।

और उसके नीचे एक आदमी अंदर खड़ा हुआ काउंटर के एक बाहर खड़ा हुआ है। ब्लैक और--

और नीचे कुछ किसान वाले पात पड़े हुए हैं एक आदमी सामने खड़ा हुआ है एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है सामने।

कुल लेडीजें मुकुट बांधके बैठी हुईं हैं और जेंट्स लोग पीले वस्त्र धारण किये हुए हैं सामने मंदिर दिख रहा है।

नाव ओपन लिखा हुआ है नीचे कुछ बच्चों वाली गाड़ियां खड़ी है खिलौने वाली।

और यहां पर मेरे को सामने नो एंट्री का बोर्ड दिख रहा है रेड कलर में लिखा हुआ ग्रील लगी हुई है।

कुछ मछलियां पड़ी हुई है ये एक दो लड़की सटक पकड़े हुए है पानी भर रहे हैं।